यह खाने में बहोत ही अच्छा लगता है। ठंडी के दिन में तिलकुट लोग खरीद के खाते है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है अच्छा लगता है।

जिसपे बहोत अच्छे बिस्तर लगाये गए है । एक सोफा जैसा कुर्सी है । बहुत सारे तकिये हैं और यह रूम देखने में काफी सुंदर है और काफी बड़ा भी है ।

पार्क में लोगो को घुमने में अच्छा लगता है। पार्क में लोगो को ताज़ी हवा मिलती है इसलिए यहाँ पे शाम के समय में बहुत भीड़ होता है और सुबह के समय लोग जॉगिंग करने आते है योगा करने आते है।